यह एक सड़क है यहाँ हिन्दू अस्पताल है यहाँ बाटा एम एस सारीज की दुकान है सड़क पर बाइक स्कूटी जा रहे हैं यहाँ एक आइसक्रीम का ठेला भी है।